इसमें एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए आया है। उसके हाथ में चोट लगी है।

यहां पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो कीर्ति की योगा सेंटर है। यहाँ पे योगा कर रही हैं। इसमें यह एक पार्क है। इसमें पे लड़कियाँ योगा करती हैं।